ऐ नाटक वाला मंच हैं और चार पांच झन आदमी मन दिखत हैं और ये वाला जो टेंट का सामान सजाय थे।

और इमे सस्ता और गंजी चड्डी जमा हर फिटाइल हा।

ये एक ऑफिस है।

दुनिया भर कर आदमी मन बाहर ले देखे घूमे और फिरे के ले आएन ह और एक यहाँ मस्ती कर के खेलन है।

टाटा कंपनी कर और आगे में रोड डिवाइडर इहि ने जाएक वाला हुने ले जायक वाला और सब कंपनी कर गाड़ी हैं कई जगह--